और उसके पीछे एक पेड़ भी है ट्रैक्टर जहां पे खड़ा हुआ है खाली मैदान लग रहा है उसके पीछे--

प ट्रेनें दिख रही हैं ट्रेन हैं खंभा लगा हुआ है खंभे से वायर गया हुआ है।

फब्बारा दिख रहा यहां लाइटिंग लगा हुआ है एक बच्चा बैठा हुआ यहां पर--

अह वो लगा हुआ क्रेट में पूरा लौकी भरा हुआ है लौकी ही तो दिख रहा है।

बाईकें चल रही हैं और ये साइकिल वाला भी आ रहा है।

ये गेम होगा गेम के हिसाब से ये लोग कर रहे हैं खाली बड़ा सा मैदान है मैदान में खेल रहे हैं।

चढते बना हुआ है फिर पानी में फिर गिर जाते है फिर ऊपर जाते है।

एक मोबाइल में बात भी कर रहे है और ये घर को दिखा रहे हैं घर तो--

क्या पता पर बहोत लाइटिंग है। इतना सुंदर सजा हुआ है ये--

अअ सब बाहर में खड़े हुए है एक गाडी खड़ी हुई है लोग अंदर जा रहे--

अच्छे यहां पर कुछ प्लास्टिक के छोटे छोटे डिब्बे रखे हैं गैलन रखो है तेल वगैरह रखते हैं वैसी कुछ मेडिसिन वाला है ऐसा लग रहा है।

ये होटल है होटल के अंदर चेयर लगा हुआ है और एकदम मस्त सजा के रखे हैं टेबल दिख रहा है।